निचे जमीन दिखाई दे रही है और यहाँ पे कुछ पौधे वगेरा भी लगी हुई दिखाई दे रहे हैं | यहाँ पे चेयर भी रखी हुई है टेबल पर |

यहाँ पे रोड भी बना हुआ है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है और निचे जमीन भी दिखाई दे रही है कुछ सामन रखा हुआ है |

पे लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है और गेट भी दिखाई दे रहा है फिर बिछी हुई है कुछ लाइटे भी जलती हुई दिखाई दे रही है |

यहां पे बहुत सारे फूल रखे हुए है जिसका कलर येलो है।

यहाँ पे एक माकन दिखाई दे रहा है जिसके दीवाल का कलर वाइट और हल्का पिंक है कुछ बोर्ड वगैरा लगे हुए है फैन भी लगे हुआ है।

यहाँ पे कुछ परदे लगे हुए जिनका कलर वाइट और पिंक है और पे बहुत सारे फूलो की मालाएं भी दिखाई दे रही जिनका कलर --

वाइट और पिंक रेड है यहाँ --